कुछ कार ग्रे कलर की हैं तथा कुछ पेड़ भी मुझे दिख रहे हैं।

जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा है।

इसमें शटर लगा हुआ है और इसके अंदर चेयर डली हुई है जोकि रेड एंड ब्लैक कलर की है।

एक घर है जिसका कलर व्हाइट है।

ब्लू कलर के उससे बैनर लग रहा है। उसके साइड में रेड कलर से बैनर लग रहा है।

एक बिजली का वायर जा रहा है।

ऊपर एक पंछी उड़ रहा दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है जिसमें बर्डे की डेकोरेशन हुई हुई है।

पिक्चर एक मंदिर की है जिसमें शिवजी की मूर्ति रखी है।

और ऊपर दो कलश रखे हैं।

का नाम ताऊ दा ढाबा है।

इस पिक्चर में मुझे एक लेडिस जाती दिखाई दे रही है जिनमें येलो कलर का सूट पहना है।

इसमें एक मुझे मिनी मेट्रो भी दिख रही है।

सामने एक डॉक्टर का क्लीनिक है।

यह पिक्चर किसी मैरिज हॉल की है जिसमे बहोत सारे कलरफुल लाइट जल रही है।

यह पिक्चर किसी ढाबे की है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे कबर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्राउन एंड ब्लैक कलर से बने हुए हैं।

जो कि व्हाइट कलर की है एक खंभा नजर आ रहा है।

इस घर का कलर क्रीम कलर है।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पीछे एक घर है जो कि व्हाइट कलर से पेंट है।

कुछ बच्चे इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बाइके यहां ऐसी खड़ी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें टेबल पर रेड कलर की दो कैच अप की बोतल रखी है।

जो कि व्हाइट रेड ब्लैक एंड बहुत सारे कलर की है।

पिक्चर में मुझे एक मशीन रखी दिखाई दे रही है जो कि येलो एंड ब्लैक कलर --

इस पिक्चर में मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यहां टेबल पे बोटल रखी है।

एक बॉटल ब्लू एंड येलो कलर की है।

तथा इसके बाहर एक मंदिर है।

किचन में मुझे ए_सी दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की है।

इसकी स्क्रीन जलती दिखाई दे रही है।

साइड में एक गेट है जो सिल्वर है और उसमें शीशे लगे हैं।

एक आदमी बीच मे काम कर रहा है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी--

यह एक दुकान है जो मेन्स वियर के नाम से है।

इस पिक्चर में स्नो फॉल हो रही है।